फिल्म हॉल है जाके के बगल में | ऑटो जा रहा है एक ओटो खड़ा है।

रखे है कुछ बेल्ट टगीं हुई दिख रही है कुछ बैग्स भी है छोटे छोटे बच्चों के कपड़े भी दिखाई दे रहे है।

इस दृश्य में हमें एक बहोत बड़ा भवन दिखाई दे रहा है। भवन के बीच में ऐसा मैदान है। ये एक कॉलेज हो सकता है।